यह एक बड़ी सी दुकान है।

जहां पर बहोत बड़े बड़े घर बने--

बैठे है ये हैं यह सड़क देखने मे बहुत--

यह एक खाली जगह है।

जहां पर लक्कड़ बहुत रखे हुए हैं इन लक्कड़ों का रंग--

यहाँ पर भी लगे हुए हैं।

अस्पताल में बहुत सारा समान--

यह एक बहोत बड़ी जगह है।

यह एक खाली जगह है।

यह एक बहुत बड़ी गुफा है।

यह एक बहुत बड़ी दुकान हैं।

जहां पर बहुत बड़ा घर ये है।

येह देखने में अच्छा लग रहा--

देखने में यह किसी दुध सेव--

इस मंच वाले नें अपना कपड़ा हरा रंग का पहना हुआ है।